यहां बड़ा सा मैदान दिख रहा है जहां पर एक लड़का एयरफोन लगाए सेल्फी दे रहा है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं छोटे-छोटे हरे भरे घास' भी--

और चारों तरफ हरे भरे बड़े-बरे पैर भी है।

और छोटे छोटे घास भी देखने को मिल रहे है।

और एक सूटकेस भी देखने को मिल रहा है।

यहां पर टाइल्स लगी हुई है और बहुत सारे पौधे भी देखने को मिल रहा है।

और उधर पानी भी बहुत सारा देखने को मिल लहा है।

यह किसी पार्क का फोटो है।

यहां पे एक क्रेन भी देखने को मिल रहा है।

और कुछ मिरर भी देखने को मिल रही है।

यहां किसी पार्टी फंक्शन का फोटो है।

और छोटे छोटे घास भी देखने को मिल रही है।

यहां दो पानी का बोतल और एक थर्मस देखने को मिल रहा है।

और एक गेट नजर आ रही हैं।

और कुछ बाहर से प्रकाश भी नजर आ न आ --

और दीवार पे कुछ पेंटे भी नजर आ रही हैं।

और छोटे छोटे पौधे भी देखने को मिल रही हैं और ऊपर एक झोपड़ी टाइप का भी बना हुआ--